इस चित्र में मुझे फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे बहुत--

एक कमरा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे बहोत--

इस चित्र में मुझे एक--

और एक औरत बच्चे को गोद में--

में मुझे कुमारन इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग दिखाई दे रही--

चित्र में मुझे किसी गांव का दृश्य दिखाई दे रहा--

चित्र में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में मुझे कमला पति--

कमरा दिखाई दे रहा--